ये केक है और अ हम्म केक ऊपर में रखा हुआ है और --

स्लाइस ये मिरिंडा जैसे दिख रहा है और यह डब्बा में मतलब अ कार्टून में कार्टून रखा हुआ है।

यह देखने में लग रहा है कि लोग पूजा कर रहे हैं अपने-अपने जो--

विशाखा डेरी ये पे यहां पे शॉप है दिख --

लोग यहां खरीदने आते हैं कार्टून नीचे रखे हैं सजा के मछली रखा हुआ --

यह कछुआ है और कछुआ बहुत घास वगैरा है।